और बूस्ट के भी पैकेट नज़र आ रहे है।

इसमें एयरोप्लैन नज़र आ रहा ह दूर से।

और जो बैगनी क्लर की शर्ट पेहना हुआ है--

दिखाई दे रहा है लाल कलर के लाइटे लगी हुई है।

यह एक सुपर स्टोर सा नज़र आ रहा है जिसमे आसपास--

नीले कलर की बस नज़र आ रही है जिसमे लिखा हुआ है सिंग --

ढोलकी लेकर ढोलकी को बजा रहै है।